यह एक मोटर पंप का इंजन है जोकि छोटे से साइज में बनाया गया--

यह एक गाड़ी है गाड़ी खराब हो गई है उसके ठीक करने के लिए--

गैराज में लाया गया है और इन आदमी उसको ठीक कर--

यह एक नहेर है नहर के सामने--

यह एक कंप्यूटर सेंटर है जहां पर--

यह एक खेत है यहां पर किसान अपनी फसल उगाता है।

पाए जाते हैं और इन मूर्तियों में जैसे भगवान गणपति बप्पा की मूर्ति भी देखने को मिलती हैं।

गौशाला को बनाया हुआ है जो की दूध को देती हैं।

अलग अलग तरह की दुकाने खुली हुई हैं एक बाहर सांईकल पे आदमी जा रहा है और कुछ व्हीकल्स भी खड़े हुए हैं।

यह एक नृत्य एकेडमी हैं जहां पर कुछ लड़कियां और लड़के नृत्य कर रहें हैं और यहां पर--

होटल का प्रागंण हैं जहां पर एक--

कुछ मूर्तियां भी मिलती हैं और --

जहां पर बच्चों को डांस सिखाया जाता है यहां पर कुछ लड़कियां--

अलग-अलग फूलों से इस पैलेस को सजाया गया है।

और साथ में कुछ और डेकोरेशन का सामान भी लगा हुआ है।

यह एक कक्षा है कक्षा में बेंच पड़ी है बैंचो पर कुछ बस्ते भी पड़े हैं।